तीन चार इलेक्ट्रिक पोल दिख रहे है घर है।

औ बै बैग लेके बच्चे स्कूल जा रहे है ।

घर की बड्डे की सबकी शॉपिंग करने लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं यहाँ बच्चों के --

लेडीज जेंट्स सबके कपड़े मिलते है बहुत दूर दूर से लोग आते है यहाँ पे और अच्छी क्वालिटी में कपडे रखते है ये लोग।

यह एक कृषि की कृषि केंद्र की शॉप है यहाँ पे हर प्रकार की --

ये बहोत ही बारिश फुल है यहां पे गार्डन है यहां पे बहोत दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं।

सुबह का नाश्ता करने के लिए ये बोट है यहाँ पे सभी मस्त है एक नंबर --

यहां पे बहोत बड़ा खेत है काफी संख्या में यहां पे खेती की जाती है और अच्छा--

और हम आये है नयी जगह में ये काफी इधर बाला के तरफ है ।

यहां लड़कों के बच्चों के लेडिज के सभी कपड़े उपलब्ध है।

लेकिन लोगों को पता है की हम कितने पाप करते है इसलिए यहाँ गंगा में सबसे ज्यादा --

हमारी गाड़ी का टायर काफी पुराना हो गया है इसलिए हमने यह टायर लेने के लिए आये हैं ।

लेकिन फिर भी क्या है यहाँ के बाल बहुत अच्छे काटते हैं इसलिए हम आए हैं ।

हम सोच रहे थे की हम थोड़ा स्वच्छता अभियान चलाए इसलिए हम आए हैं साफ सफाई करने के लिए ।

हम आए हैं गोंदिया से काफी दूर अमरावती जहाँ हमारे दोस्त की शादी है और हम --

हम अभी आये हैं खाने के स्टॉल तरफ और स्टॉल काफी बहुत जोरदार दिख रहा है ये केटर्स वालो का काम है काफी जोरदार मैं तो --

सोच रहा हूँ की ये हम अपने शादी में भी इनको ही बुलाऊँ काफी जोरदार खाना बनाते हैं ये लोग ।

ये आया है हम गोंदिया से चव्वालिस किलोमीटर दूर आया है और हाईवे है ।

यहाँ से वो एक रोड जाता है रायपुर तरफ अ एक रोड जाता है नागपुर तरफ और काफी --

और ये काफी अच्छी जगह है हम यहाँ जीवन बीमा वाला है और यहाँ हम अपना लाइफ का इंश्योरेंस लेने आए हैं ।

कुछ भी हो जाए लेकिन हम इन्शुरन्स बनाएंगे अपना जीवन का भरोसा नहीं है कभी भी कुछ भी हो सकता है इसलिए हम आज जीवन बीमा बना ही देंगे।

और हम आए हैं लातूर से थोड़ा दूर एक्वा वाटर पार्क जो है रायपुर में --

स्विमिंग पूल का मज़ा लेने के लिए और काफी अच्छा नजरीया है यहाँ पे और काफी ठंडा ठंडा पानी है ।

मजा बहुत आ रहा है हमें नहाने में आप भी आओ कभी ।

लोग आते हैं अपना इलाज कराते हैं उनका भी हर हर बिमारी का इलाज हो जाता है ।

शादी का सीज़न चल रहा है तो मजा बहोत आता है शादी में जाने अब हम काम छोड़ के हम शादी में आये हैं आ --

कुछ भी हो यार हम आज यहाँ जाएंगे ही नहीं ।